मार्केट में सब्जी और फल का दुकान भी दिख रहा है दो-तीन ऑटो रिक्शा भी दिख रहा है एक ऑटो रिक्शा में कुछ --

बहुत सारी कारें भी लगी हुई हैं एक रेड कार है सिल्वर कलर की कार है और वाइट कलर की कार है।

ये एक ओपन स्पेस दिखाई दे रहा है।

वॉल पे कुछ डिजाइन बनाया हुआ है।

और फल दोनों ही हैं एक बॉक्स में अनार रखे हुए है केले रखे हुए हैं।

अ लड़की और एक लड़का साथ में बैठे हुए हैं जबकि दूसरे टेबल पे।

एक लड़की और एक औरत बैठी हुई है।

जिसका आधा शरीर ही दिखाई दे रहा है कुछ पेंटिंग टांगे हुए हैं।

कुछ कुत्ते बैठे हुए हैंमैदान में।

ऊपर अभी कुछ काम भी चल रहा है।

ये एक ओपन स्पेस दिखाई दे रहा है जिसके आजू-बाजू में--

खेत हैजो कि फिलहाल खाली है।

इसमें बहुत सारे सोफे लगाए हुए हैं।

सामने पूरा मेनू भी लगाया हुआ है।

द गार्लिक फैक्ट्री करके भी लिखा हुआ है।

इसमें मेड इजी करके कुछ लिखा हुआ है।

ग्रीन कलर का गुंबज जैसा लग रहा है।

एक पीला कलर का घर है एक टावर भी दिख रहा है।

जिसमें गिटार भी रखे हुए हैं।

ये एक कुछ ऐतिहासिक जगह दिख रहा है यहां पे झाड़ भी जमे हुए हैं।

एक दिल का चित्र भी बना हुआ है।

आर_एम_एल वाइट कलर में लिखा हुआ है।

ये कोई ऑफिस दिख रहा है।

चेयर के साथ में और यहां पे एक स्वामी विवेकानंद का--

और नीचे की तरफ कुछ पीला कलर का बॉक्स दिख रहा हैशायद जिसमें साड़ियां रखी हुई हैं।

एक स्टेन फैन भी दिख रहा है।

बहुत सारे तेल रखे हुए हैंअलग-अलग टाइप के पाउडर भी रखा हुआ हैशैंपू है।

ये एक स्तंभ टाइप का दिख रहा है लाल कलर का स्तंभ है।

ऊपर गोल्डन मुकुट लगा हुआ है।

उसके पीछे बहुत ही बड़ा लाइट दिखाई दे रहा है।

पास में बहुत सारे पेर लगे हुए हैं।

बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं एक छोटा सा गेट भी दिखाई दे रहा है।

उसके बाद में खाली बाउंड्री दिख रहा है बहुत बड़ा--

और उस मैदान में बहुत सारे पेर भी दिखाई दे रहे हैं।

ये शायद ऐसा लग रहा है जैसे कि--

बहुत सारे लेबर हैं जो काम कर रहे हैं।

एक टी_वी भी दिखाई दे रहा है।

कुछ प्रोजेक्ट दिया गया है बनाने के लिए--

एक मैम है जो खड़ी हैं।

और चेक कर रही हैं कि किसका प्रोजेक्ट अच्छा है।

लड़के का कपड़ा देख के ऐसा लग रहा है जैसे ठंड का मौसम है।

आस-पास में खुला मैदान है।

एक लड़का अंदर ए _टी_एम का इस्तेमाल अभी कर रहा है।

टेक्स लस्सी हिल्स करके भी एक दुकान-- है सामने एक ठेला लगा हुआ है।

कुछ पौधे गमले में भी लगे हुए हैं कुछ छत से लटके हुए हैं।

बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

और आसपास बहुत बड़े-बड़े बरामदे हैं।

एक खाली मैदान दिख रहा है।

नंबर दो भी लिखा हुआ है।

यह एक पेट्रोल पंप है।

पीछे से एक ट्रक भी आ रहा है।

कुछ लोग आते-जाते भी दिख रहे हैं।

जू के बाउंड्री के बाहर बहुत सारे पेर भी दिख रहे हैं।

जो घास खा रहे हैं एक बहुत बड़ा गड्ढा भी है।

बहुत सारे लोग सामान लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कॉमप्लेक्स करके कुछ लिखा हुआ है थर्ड फ्लोर का एरो बना हुआ है।

शायद मनाने की कोशिश की जा रही है इसको।

रिकॉर्डिंग स्टूडियो लग रहा है यहां पे दो ब्लैक कलर के चेयर हैं।

दो डिस्प्ले भी दिखाई दे रहा है।

आस-पास में छोटे-छोटे पौधे दिख रहे हैं।

बड़े पैर भी दिख रहे हैं।

ये एक सोसाइटी जैसा लग रहा है।

गार्डन में काफी घास चमे हुए हैं।

बिल्डिंग के बाहर गमले लगाए हुए हैं।

बहुत ज्यादा भीड़ है बहुत ज्यादा ही लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये नगर निगम का बिल्डिंग लग रहा है।

इसमें आग बुझाने वाली दो गाड़ियां लगी हुई हैं।

इसमें गणेश भगवान की मूर्तियां हैं।

इसमें डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है कुछ बाल्टियां भी दिखाई दे रही हैं।

जहां पे बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है।

ये एक जनरल स्टोर दिखाई दे रहा है।

साबुन भी है आर्टिफिशियल फ्लावर भी है।

दुकान के अंदर तीन लड़के खड़े हैं एक स्टील का चेयर भी है।

इसका दीवार वाइट और ब्लू में है कलर किया हुआ।

सैलून में पर्दा भी लगाया हुआ है।

और पेड़ के नीचे बहुत सारे पौधे भी छोटे-छोटे दिख रहे हैं।

कुछ पेड़ हरे हैंऔर कुछ के पत्ते झर चुके हैं।

पीला कलर का टेबल है ब्लैक चेयर है बैलून लगे हुए हैं रेड और पीले कलर के सीलिंग लाइट जल रहा है।

जहां पे डीज़ल और पेट्रोल दोनों मिलते हैं पेट्रोल डालने वाले लड़के भी खड़े हैं ऐसा लग रहा है --

साइबर कैफे में नंबर नौ आठ सात लिखा हुआ दिख रहा है पास में बहुत बड़े-बड़े खिड़की दिख रही हैं।

दो चेयर पे लड़के बैठे हैंऔर दो पे लड़कियां बैठी हुई हैं।